लड़के है जो बैडमेंटल खेल रहे है ।

पड़ाया जा रहा है एक सर है एक मेम है ।

यहाँ पे मार्केट लगा हुआ है।

यहाँ पे एक सैलून है और सैलून के सामने एक --

और यहाँ पे पेड़ों की छाव दिखाई दे रही है कुछ पेड़ों की पत्तियाँ दिख रही है।

एक काले कलर का लाइट का खम्भा लगा है जिसमे सफ़ेद कलर का बल्ब लगा हुआ है सामने कार खड़ी हुई है ।

फूल लगे हुए है सफ़ेद हैलाल है।